नंदी महाराज की मूर्ति है। यहाँ पे सभी भक्तजन पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं।

शाकाहारी मांसाहारी सभी प्रकार के खाना देती है।

एक डॉक्टर घर है यह एक अस्पताल है अस्पताल में एक बेड लगाया हुआ है यह रूम में फीमेल जनरल वार्ड है यहाँ पे एक बेड लगी हुई है ।

यहाँ पे बोहत सारे लोग मेनेजर से बात करने के लिए इस होटल में आते हैं। होटल में बहुत सारे लोग --